कुछ सूट भी टंगे हुए हैं कुछ टॉप टंगे है कुछ कमीजें टंगी--

लाल रंग की इसने धोती और गमछा जैसा लिया हुआ है।

और सामने एक काली सी पानी की टंकी भी दिखाई दे रही है।

एक बच्चों की छोटे बच्चों की साइकिल है जो की पिंक कलर की है टायर ब्लैक है इसके टोकरी भी पिंक कलर की है।

पार्क में नीचे छोटी छोटी हरी हरी घास है।

जहां पर टेबल के ऊपर बहुत कपड़े हैं।

कुछ जींस पड़ी हुई हैं जिन्हें खोलकर रखा हुआ है।

और कुछ ड्राई फ्रूट्स की थालियां पड़ीं हैं।

और ऊपर फूलों से डेकोरेशन की हुई है।

एक टेबल के ऊपर पानी की बॉटल भी है।

छत पर पंखा लगा हुआ है दरवाजो पर कुछ पेंटिंग जैसी बनी हुई है साइडों में--

साइड में चिप्स के पैकेट रखे हुए हैं येलो ग्रीन ब्लू रे--

ये एक मैकेनिक की शॉप है।